एक सूरज दिखाई दे रहा है।

खाटू याना स्पोर्ट्स की ये दुकान है जिसमें स्पोर्ट्स की सभी चीजे मिल जाती है।